और एक घर भी बना हुआ है।

यहां तस्वीर में डूबता हुआ सूरज दिख रहा है।

उसके नीचे काफी सारे छोटे छोटे से पेड़ रखे हुए हैं।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

जहाँ पर एक नीले रंग का ऑटो आ रहा है।

जमीन पर छोटे-छोटे पेड़ भी लग रहे हैं।

यहाँ पर कांच का दरवाजा है।

टेबल पर रंगबिरंगी सी गेंदें पड़ी हुई हैं।

उस पर धूप की बहुत तेज रोशनी आ रही है।

सड़क पर एक बड़ी सारी बस जा रही है।

ये तस्वीर किसी गार्डन की है।

और ऊपर बिजली के लंबे-लंबे तार लगे हैं।

इस झूले में बच्चे और बड़े बैठे हुए हैं।

बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हैं जिसमें काफी सारी खिड़कियाँ हैं।

खिड़कियाँ भी कांच की ही लगी हुई है।

सिर्फ मिट्टी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी कमरे की है।

जिसमें बैठने के लिए दो कुर्सियां लगी हैं।

बिजली के काफी लंबे-लंबे तार लगे हुए हैं।

जहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियां खड़ी है।

आस-पास काफी सारा सामान है।

ये बच्चों के खाने की चीजें हैं।

कांच के ऊपर दो झंडे चिपके हुए हैं।

जिस पर एक लड़का बैठा हुआ बालों को कटवा रहा है।

और धूप बहुत अच्छी चमक रही है।

जिस पर लाल रंग किया गया है।

ये एक पारक की तस्वीर है।

जमीन पर लाल और सफेद पत्थर लगे हुए हैं।

कुछ लोग डब्बे के बाहर भी खड़े हैं।